मुझे यहाँ पर बहुत सारा अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ पर यह मुझे चारो तरफ हरियाली हरियाली खेत दिखाई दे रहे हैं जो कि हरे भरे हैं।

मुझे यहाँ पर एक मगरमच्छ दिखाई दे रहा हैं जो की अभी शांति आँखे नीचे हुई दिखाई दे रही हैं।

मुझे यहाँ पर एक दूकान रखी हुई दिखाई दे रखी हुई है जहाँ पर रोहन चाय सेंटर कॉफ़ी और यहाँ पर मुझे दो आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे है जोकि कुछ ले रहे हो शायद और यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई दिखाई दे रही है।

मुझे यहाँ पर चर्च दिखाई दे रही है जहां पर लॉर्ड प्रेयर लिखा हुआ दिखाई दे रहा प्रभु की प्रार्थना--